ऊपर में सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है।

बागल मे एक आदमी बैठा हुआ है।

निचे जमीन काला कलर का है बगल में पर्दा भी काला कलर का है।

बगल में भी बहुत हरा भरा पौधा है।

साइड मे एक शीशा दिख रहा है।

यह नीचे एक टेबुल हैजो बहुत छोटा है।

उसका ऊपर का हिस्सा काला कलर का है।

बहुत सारा लड़का खड़ा है।

बगल में एक कुर्सी रखा हुआ है।

बगल दीवाल में बहुत सारा चित्रकार किया हुआ है।

साइड में अलबेस्टर का छत जैसा ह--

यहां बहुत बड़ा इस कपड़ा का दुकान है। यहां बाहर में बहुत सारा पुतला खड़ा है।

यहां दीवाल के पास बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है जो हरा भरा है।

यहां बगल में एक नीला कलर का कार लगा हुआ है।

यहां एक गाड़ी भी लगा हुआ है जो बहुत लंबा है।

साइड में यहां सीढ़ी भी दिख रहा है।

यहां ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे एक शटर दिख रहा है। जो लाल कलर का है।

साइड में बहुत सारा हरा भरा घास है।

यहां बहुत रंग बिरंगा पर्दा भी है।

यहां बहुत बड़ा कांच का गेट लगा हुआ है।

यह एक कांच का अलमारी है। उसके अन्दर बहुत सारा फोन रखा हुआ है।

पीछे का दीवाल गुलाबी कलर का है।